यखम सब्जी कटेण छन लगीं यखम प्याज भी छन एक ठोकला फर रख्या यखम फुलटा छन रख्या बाल्टी छन रखी टेम्पू छ यख मा जी।

यख मा जी एक बस भी छ दिखेन लगीं एक लाल रंग की बस छ एक सफेद रंग की बस छ यखम स्कूटी और बाइक छ लगीं।